और यहां पे फ्लोर का काम चल रहा है जमीन बन रही है।

ये एक फास्ट -फूड अ फास्ट-फूड का अ का जोन लग रहा है।

और काफी स्मार्ट लुक लग रहा है दो वॉटर की की बॉटल लगी हुई है और काफी --

काफी अच्छा नजारा देखने को मिल रहा है काफी अच्छा एक गांव का मैदान है यहाँ पे दर्शक मैच देख रहे हैं।

और जंगल के आजु-बाजु काफी हरियाली हुई है पहाड़ी--

ये स्कूल परिसर का बस रखने का गेरेज है और यहां पे बस खड़ी हुई है ।

और आजू-बाजू पहाड़ का सुंदर नजारा रहा है।

ये हैप्पी बर्थडे पार्टी मे कोई ऑर्केस्ट्रा ऑर्केस्ट्रा वाले आए हुए है।

ये एक नाइट टूरनामेंट चल रहा है काफी दर्शक बैठे हुये है पूरा ग्राउन्ड हरा-भरा नज़र आ रहा है।